यह तस्वीर एक हारमोनियम की दिखाई दे रही है यहां पर हारमोनियम का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग मास्क लगाएं हुए नजर आ रहे हैं।

हरीहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस की यह तस्वीर दिखाई दे रही है।

दीवार पर कुछ तस्वीरें भी लगी हुई है।

यह तस्वीर मुझे दिवाली के किसी कार्यक्रम की नजर आ रही है यहां पर दो बच्चियों अपने हाथ में कैंडल लेकर खड़ी हैं।

यह तस्वीर मुझे किसी मेले की नजर आ रही है।

सफेद रंग का टेबल है उसके ऊपर कांच भी नजर आ रहा है यह लाइट की शॉप है।

वे एक संतरी रंग का झंडा भी नजर आ रहा है।

जहां पर माँ काली की तीन तस्वीरें नजर आ रहीं हैं।

जहां पर नीला लाल वायलेट पीला हरा गुलाबी रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

व साथ में दो कुर्सियां भी नजर आ रही हैं।

यहां पर एक घड़ी नजर आ रही है।

यह तस्वीर मनोज क्रिन सर्विस सेंटर की दिखाई दे रही है यहां पर एक लाइट भी जली हुई है।

यह तस्वीर एक सत्संग स्थल की नजर आ रही है अंदर बहोत सारी कुर्सियां नजर आ रही है।

जोकि एक काले रंग के बेंच पर रखे हुए हैं।

यह तस्वीर एक डॉक्टर की नजर आ रही है।

बोहोत सारी दवाईयां टेबल पर नजर आ रही है।

यहां पर बेड एक सिंगल बेड दिखाई दे रहा है यहां पर ये नीले रंग की चद्दर भी बिछी हुई नजर आ रही है।

यह सर्दियों का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जिस पर एक औरत बैठी हुई नजर आ रही है।

यह तस्वीर किसी अ बड़े से सेमिनार हॉल की नजर आ रही है जहां पर लाल रंग की--